एक बोहोत बड़ा मैदान है जिसमे बोहोत सारे बच्चे खड़े हुए हैं। पीछे कुछ बिल्डिंग नजर आ रही हैं बहुत सारे पेड़ --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

यहाँ पर एक बाजार लगी हुई है सामने की तरफ एक आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा है जिसकी फूलो की दुकान है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान नज़र आ रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हुए नज़र आ रहे हैं एक औरत ने अपने मुहं पर कुछ कपड़ा बांधा हुआ है और फ़ोन पर बात कर रही है।

ऑरेंज है। बोट का कलर पीला और हरा हैं। चारों साइड बहुत सारें पेड़ नजर आ रहे हैं। एक टापू जैसा न --